दो आदमी बैठे हुए हैं दाएं साइड एक खिड़की है और पर्दे ढ़काये गए हैं जोकि ब्लैक कलर और वाइट कलर में है।

और दाएं तरफ एक गेट लगा हुआ जो की लकड़ी का है।

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ माँ रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि हिंदी से लिखा हुआ है।

कुछ ने टोपी भी पहनी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है।

दाईं तरफ एक घर बना हुआ है जो कि ब्लू कलर का है वहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

इस तस्वीर में एक मोमबत्ती का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर एक मोमबत्ती जल भी रहा है।

व्हाइट कलर का वहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जो कि येलो कलर का उसमें लिखा हुआ टॉयलेट ।

आगे ऑरेंज कलर का दीवार में लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस ।

इस तस्वीर में एक माल का दृश्य दिखाया गया है इस माल के बाहर एक बोड भी लगा हुआ है मोड एंड ट्रेड द मिरर ऑफ़ ब्यूटी ।

बगल में महाराणा का एक बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे एक बाइक खड़ी--

कुछ बड़े बड़े इमारतें हैं कुछ ईमारतों में शीशे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में काफी सारी मूर्तियां रखी गई है जो की कपड़े पहने हुए है।

आगे एक बाइक भी है जो कि ब्लैक कलर की है उसमे एक हेलमेट भी टंगा हुआ है।

इस दुकान में एक शीशे का गेट भी लगा हुआ है और बाएं तरफ एक डस्टबिन है जो कि येलो और वाइट कलर में है।

बीच में भी प्लास्टिक और मिट्टी के गमले में फूल पौधे लगाए गए हैं।

उसके इर्द गिर्द काफी सारे बैलून लगी हुई है जो कि अलग अलग कलर के है।

यहां पे एक मैट भी बिछा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है और कुछ चेयरे रखे हुए हैं जो कि व्हाईट और रेड कलर में है।

और और उसी के बगल में कुछ मशीनें भी रखी गई हुई है।

इस तस्वीर में रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है जिसके बीच में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।